अलग अलग सामग्री है जैसे की बहोत सारे बाइक के समान है बहोत सारे क्लच ब्रेक है बहोत सारे डब्बे हैं बहोत सारे स्लेटर लेने वाले सामान है।

सामने एक दीवाल है जिस बैगनी कलर का बनाया हुआ है उसके बगल में एक ऑरेंज कलर की डिब्बी रखी--

यह एक घर का दृश्य जो कि व्हाइट और रेड कलर का है जिसके नीचे पिलर पे पीला कलर का चिपकाया हुआ स्टीकर जिसपे आइडिया लिखा हुआ है।

यह दृश्य एक कंप्यूटर सेंटर का है जिसके बाहर इंश्योरेंस सेंटर ऑफिस लिखा हुआ है।

इसके सामने बहुत सारे पीले कलर के पर्दे लगाए हुए हैं उसके आसपास खाना लेने वाला बहुत सारा सामान रखा गया है।

उपर में डी_जे का बॉक्स रखा हुआ है पास में हेल्मेट रखा हुआ है।

यह एक मॉल है जिसमें बहुत सारे बोड़े रखे हुए हैं जैसे कि एक के ऊपर एक बोड़े रखे हुए हैं जैसे कि ग्रीन कलर के बोड़े है और पिंक कलर के बोड़े पास में ब्लू कलर के भी बोड़े हैं।

बच्चे जो की एक रेड कलर का शर्ट ब्लैक कलर का पेंट पहना हुआ एक बच्ची जो की फ्रॉक पहनी हुई है।

सामने जो रोड है उसपे एक भी गाड़ी नहीं चल रही --

उसके बगल में दो वाइट कलर के बल्ब लगाए हुए हैं।

यह एक घर का दृश्य है जो कि नीला और पीला कलर का है जिसके सामने जो ग्रिल है वो ब्ल्यू कलर का है ऊपर में व्हाइट कलर का छत है।

बगल में बहोत सारे पिक्चर टांगे हुए हैं जो की ओ_एस है जो की लाल कलर के हैं।

जोकि बहुत ही बड़ा है जिसके ऊपर रेड कलर का बनाया हुआ है पास में रेड कलर की कार लगाई गई है आसपास बहोत बड़े बड़े हरे भरे घास हैं।

उसके बगल में एक गेट है जोकि ब्राउन कलर का--

सामने एक बात बड़ा सा घर है जोकि ब्लू और वाइट कलर का है उसके आसपास बहुत सारी पूले लगाई गई और टावर लगाया गया है।

पास में दो व्यक्ति हैं जोकि आगे की ओर चल रहे हैं जोकि ब्लू कलर का शर्ट और ब्लैक कलर का टी शर्ट पहने हुए हैं और रेड कलर का बैग टांगे हुए हैं।

उसके बगल में जो पोस्टर है उसपे एक व्यक्ति छापा गया है जोकि ब्लू कलर का कपड़े पहने हुए है।

उसके बगल में छोटे छोटे गमले रखे हुए है जिसमें हरे हरे पौधे लगाए गए है।

जो कि एक और व्यक्ति जो की ब्लैक कलर का शर्ट और ब्लैक कलर का पेंट और एक ब्राउन कलर की टोपी पहनी हुई है।

सामने एक बोर्ड लगाया गया है जिसपे हेयर हैक्स लिखा हुआ है।

ऊपर में बहुत सारी तार इधर से उधर गई हुई है।

बगल में वाइट कलर की तीन बिल्डिंगे बनाई हुई हैं।

इसके ऊपर एक कोकोनट का पेड़ और आस पास बहुत बड़े बड़े हरे भरे पेड़ पौधे हैं।

आसपास बहुत छोटे छोटे पौधे हैं जोकि ग्रीन कलर के है।

उसके ऊपर रेड कलर का ब्रिक्स लगाया गया है नीचे में ग्रीन और ऑरेंज कलर का घर है।

इसमें से बहुत सारे पौधे जो कि ग्रीन कलर के है बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ हैं जो कि डार्क ग्रीन के है।